बच्चा चप्पल पहिना हुआ --

ये ओ ऊपर से लड़ी तरी है फ बल्ला तल्ला है।

आदमी बैठा हुआ है ऊपर में।

बच्चा सब ढेरिके बच्चा है सब। टेक्टर है और टरा --

ऊपर में बोहोत पार्टी तार्टी चल रहा है अच्छा लग रहा है।

अह जाते हैं कई चेन्नई बिहार में --

हरा फूल और बत्ती है आदमी बच्चा सब उधर फूल-तूल महिला-तहिला सब है पानी है।

बहोत अच्छा लग रहा है। आइ.सी.आइ.सी. बैन --

आदमी सह आदमी सह हाथ जोड़ा हुआ है उधर गाछ वृक्ष है।